देख सकते हैं आदमी उदमी भी है और यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ समान-उमान भी है और गाड़ी उड़ी चला रहा है बच्चा और ये भी मॉल लग रहा है।

और यह बहुत ही बड़ा है और इधर देख सकते हैं साइड में घर उर भी है और उधर भी कुछ समान-उमान है और ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है और बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर दो लड़का है और एक लेडिस भी खड़ा है और वहाँ पर देख सकते है एक आदमी --

यहाँ पे देख सकते है बैग उग भी है और ये बहुत ही सुंदर-सुंदर बैग है और उधर देख सकते है पृथ्वी-वृथ्वी बना हुआ है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है और यहाँ पे देख सकते है पचास परसेंट ऑफ भी है।

ये बहतु ही सस्ता-सस्ता यहाँ पे बैग दे रहा और ये बैग सफर में काम आता है ट्राली इसे बोला जाता है और ये बहुत ही सुंदर है बहुत ही अच्छा लग रहा है।

यह समझ में नहीं आ रहा क्या चीज है और उसका लुकींग फैंटास्टिक बहुत ही अच्छा लग रहा है ये थिएटर का यहाँ पे तस्वीर वसवीर चिपकाया गया है और बहुत ही बेकार है।